पाईप लगे हुए हैं जोकि चार खुटे है गन-मन पाइप लगे हुए हैं। छत के ऊपर।

दुबे-दुबा लगे हुए हैं बुद्धि के पेड़ लगे हुए हैं बगल में रोड दिया है बीच मे हरी-भरी पेड़-पौधे दिखाई --